जहां बच्चों के खेलने के लिए झूले हैं।

बिस्तर से बिछा हुआ है।

यह तस्वीर एक बजार की है।

एक ठेला जाता हुआ दिख रहा है।

एक व्यक्ति ब्लू टी-शर्ट में आते हुए दिख रहे हैं।

करतार पोस्टर बना हुआ है।

एक व्यक्ति ब्लू टी-शर्ट में लाल कलर की बैग टांगे हुए एक अ लड़की को देख रहा है।

यह किताब कॉपी की दुकान है।

काफी सारी किताबें रखी हैं कॉपिया भी है विभिन्न प्रकार की पढ़ने लिखने की वस्तुएं रखी है।

और पेंसिल भी है पेन भी है।

मैदान में घास काफी छोटी-छोटी--

एव ए_टी_एम के बाहर--

यह तस्वीर एक मैदान की है।

डाला लेके जा रहे हैं।

गुलाब की तस्वीर रखी गई है काफी अच्छे से--

इस तस्वीर में हमें एक सरक दिखाई गई है।

सड़क पे एक स्कूटी सवार है।

एक बाइक सवार लाल कलर की बैग लेके--

ग्राउंड पूरी तरह से खाली है।

पीछे एक सफेद रंग की इमारत है।

जंगल ही जंगल है मैदान खाली है।